इस इमारत का नाम सूर्या एस यू आई एस यू आर वाई ए ए लिखे एक बहुत सारे लाइटिंग दिखाई दे रहे हैं।

मूवी टाइम लिखे हैं अंग्रेजी में बाजू बाजू के शॉप में फिट हार्टी क्लब लिखे हैं नीचे बेयर शॉप है।

यह कार सिटी कार केयर दिखाई दे रहा है और यहां पे एक फुटपाथ भी है।

बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के आइटम्स खाने के आइटम्स रखे हुए हैं इधर एक प्लेट्स रखे हैं उधर एक आदमी रखा हुआ है।

छवि मैं एक बस दिखाई दे रही है जो बहोत पुरानी बस दिख रही हैं।

छवि है बहुत सारा दृश्य दिखायी दे रहा है एक अननोन प्लेस है जहां पर बहुत सारे लड़क लड़की जा--

जहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है लेफ्ट एंड राइट बहुत विभीन्न विभीन्न तराके बुक्स है एक छोटी सी बेंच दिखायी दे रही है औ--

इस छबी में बहुत सारे स्टोर्स हैं।